और यहां पर बहुत सारे सामान अंदर के तरफ भी रखे गए हैं।

दुकान दिखाई दे रहा है जहां पर आगे की तरफ एक काउंटर बना हुआ है।

और दीवाल पर एक पंखा भी दिख--

छोटा सा नाव दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक बहोत छोटा सा रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे बहुत सारे मिस्त्री काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

सामने मुझे यहां दो रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहे हैं।